सामने एक नदी दिख रही है नदी बोहोत बड़ी है पीछे हरियाली भी है दिख रही है और सारे पेड़-पौधे लगे हैं।

सामने दूकानदार खड़ा है पीछे लाइट लगी हुई है और यहाँ बहोत ही रंग-बिरंगे किताब किताबें दिख रही है जो अच्छी लग रही है देखने में।

यह एक डांस ऐकेडमी है डांस ऐकेडमी में छोटे छोटे बच्चे डांस सीखने आये हुए हैं।

पीछे डांस हो रहा है और बच्चों के पीछे एक बहोत बड़ी दीवार भी है जो अच्छा ही डेकोरेट किया हुआ है जो सुन्दर लग रहा है।

यहाँ हर तरह की हर किस्म की किताबों को रखी गयी है जो लोग किताब उठा के देख रहे हैं।

पुलिस सड़क दिख रही है बहुत सारे टोटों चलते हुए नजर आ रहे है पीछे बड़ी सारी बिल्डिंग भी है ।

ने सड़क है सड़क पर एक ठेला है ठेला पे बहुत बड़ा एक मछली है ।

बुक स्टाल पे दो व्यक्ति खड़ा है और एक दुकानदार बैठा हुआ है| स्टाल पे एक कंप्यूटर भी दिख रहा है।